जिसपे पेप्सी लिखा हुआ नजर आ रहा है।

जो आसमानी कलर का है।

और उसके अंदर पेड़ पौधे वगैरा नज़र आ रहे हैं।

यह दृश्य में बहुत सारे मूर्तियां की तस्वीर दिखाई गई है।

और एक ट्रैक्टर रुकी हुई भी दिखाई दे रही है।

यह दृश्य में एक दुकान की तस्वीर दिखाई गई है।

वो रेड व्हाइट और ग्रीन येलो ।

यह दृश्य एक हाल की दिखाई दे रही--

और कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

यह दृश्य में एक लॉन्ड्री लैब की जगह दिखाई गई है।

और भी बहुत सी लिखी हुई है।

इस दृश्य से मैं एक मैदान की तस्वीर दिखाई गई है।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

साइड में भी कुछ बिल्डिंगें में दिखाई जा रही है।

और इस पे येलो कलर की बैनर भी लगी हुई है।

इस दृश्य में एक झूले की तस्वीर दिखाई गई है।

और सीलिंग पे एक बल्ब भी लटक रहा है।

इसपे येलो कलर का रंग से लिखा हुआ है सुखदेव पैलेस ।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

और एक भो झोपड़ी भी नजर आ रहा है।

और सीलिंग पे बहुत ही कलरफुल लाइटें भी लगी हुई हैं।

यह दृश्य में एक बीज दुकान की तस्वीर दिखाई गई है।

नीचे कुछ स्टैचू खड़े हैं।

यह दृश्य में एक केक शॉप की तस्वीर दिखाई गई हैं।

और उसके सीलिंग करकट लगी हुई है।

यह दृश्य में एक मैदान की तस्वीर दिखाई गई है।

और एक बड़ी सी मंदिर भी नजर आ रही है।

जो की मंदिर ऑरेंज कलर की है।

इस दृश्य मे एक पंडाल की फोटो नजर आ रही--

और पंडाल येलो कलर अ की--

और साइड में एक बिल्डिंग नजर आ रहा है ।

और इस पे एक खिड़की भी नजर आ रही है।

और टेबल भी नजर आ रहा है।

और बगल में बहुत सारी खेत वगैरह नजर आ रहे हैं।

और बाईकें भी दिखाई दे रही है।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

यहां पे बेड बिछी हुई है।

यह दृश्य मे एक पर्दे की दुकान की तस्वीर दिखाई गई।

जिससे रोशनी अंदर आती हुई नजर आ रही है।

इस दृश्य में तालाब दिखाई दे रहा है।

और कुछ व्यक्ति इसमें नहा धोवा रहे हैं कुछ खड़े भी हैं।

और बीच में एक कटोरी में चटनी भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

इस दृसय में लोगो लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

और दीवार पे भी जूते चप्पल छपी हुई दिखाई दे रही है।

यह दृश्य में एक हॉल की चित्र दिखाई गयी है।

यहां पे नीचे से बहुत ही पाया नजर आ रहे--

और साइड में रेलिंग भी लगे हुए हैं।

यहाँ पे बेंच लगा हुआ है।

उसपे भी झाड़ी सा दिख रहा है।

इस दृश्य में एक रोड की तस्वीर दिखाई गई है।

कुछ आदमी नीचे से आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।